कान है एक आदमी चाय ब ना रहा--

यहां पे एक बाल क टाने का दु--

और दो गाड़ी है एक गाड़ी झपा हुआ है और एक गाड़ी--

यहां पे एक लड़की डांस कर रही है।

जिसमें कि दो कुर्सी लगा हुआ है रेड कलर का।

और यहां पर एक आदमी है।